ये एक आदमी यहां पे लेटा हुआ है यह हॉस्पिटल दिख रहा है नीचे चपना है यहां पे बहुत सारे बेड --

के नीचे ऑरेंज कलर के यहां पे चप्पल उतारा गया राइट साइड में--

और यहां पे पर्दे भी लगाए गए हैं अलग-अलग कलर के यहां पे लेडीज चाहे सभी मिक्स --

यहां पे ये बहुत सारे सामान अचार के डब्बे घी के डब्बे है अलग-अलग शेल में अलग-अलग साइज के डब्बे रखे हुए हैं.

बड़े बड़े बॉटले भी लगाए गए हैं लाइटिंग भी चालू है नीचे पांचवे छत में रखा गया है सामान--

आया हुआ सामान उसको उत्तरी किया जाता है यहां पे इसे सर्विस सेंटर कहते हैं और यहां पे आजूबाजू बहुत सारी दुकान है.

ये एक बास्किन बी_आर रैपिंस है यहां पे आरयन मार्ट भी हैं ऊपर कोचिंग भी जाती है फर्स्ट फ्लोर पे टेंथ की--

और यहां पे बाजू कुर्सी भी है टेबल है गाड़ियां भी खड़ी हुई है डबल स्टैंड मारा हुआ यहां भी लोग भी है यहां पे बाहर साइकिल भी--

यह एक फायर रॉक्स साइकिल की दुकान है और उसके बारे में इसका बोर्ड भी लगाया गया यहां पे हर तरह की साइकिलें मिलती है।

यह एक चप्पड़ों की दुकान है यहां पे बहुत सारी लाइटिंग चालू है यहां पे आपका फैंस है बहुत सारे लाइट --

पी_ओ_पी भी किया गया है और यहां पे--

बड़े-बड़ेपेड़ भी दिख रहे हैं यहां पे रास्ता भी है और यहां पे बाउंड्री भी खींची गई है दीवार भी खींची गई है।

यहां पे घर का फूट सामान मिलते हैं चिप्स के पाकेटा मिलते हैं बिस्कुटा जूस के बोतलिया दूध की पैकेट निरमा की पैकेट दही की पाकी --

और यहां आटे के पैकेट चावल के पैकेट और पूरा--

में अह सूखे हुए झाड़ बंबा भी है कलर कलर किए हुए और यहां पे टाइल्स भी बिछाए गए और यहां पे कॉलेज भी दिख रहा है और उसका बोर्ड भी लगा हुआ है।

ये एक ऑफिस है यहां पे बड़ी सी टीवी है और पर्दा भी है ब्लू कलर कैमरे बहुत सारी लाइटिंग --

हुआ है यहां पे ऊपर काले कलर की पानी की टाकी भी है और उसके ऊपर झंडा लगाया गया है यहां पे कार भी खड़ी हुई है।

हरे पिंक और रेड कलर से इसे सजाया गया है और नीचे हरे कलर का मैट डाला गया और ब्लू कलर के --

यह एक फ्लाईओवर है यहां नीचे कार गाड़ियां सभी जा रहे हैं।

और आजू-बाजू बड़े-बड़े बिल्डिंगा बहुत सारे दुकानें ऊपर आसमान आजू-बाजू बड़े-बड़े पेड़ भी दिख रहे हैं यहां पे बहुत सार--

बड़े-बड़े पेड़ भी दिख रहे हैं और यहां पे आदमी शमला दलिए हुए गले में खड़ा हुआ.--

बोर्ड है और गेट है जो कि बंद है स्टेप भी है राइट अंडर ग्राउंड फ्लोर है आजू बाजू--

बड़े बड़े पेड़ भी दिख रहे हैं और लाइट के खंभे हैं और उनकी वायरिंग भी जा रही है और ऊपर आसमान भी दिख रहा है।